और व्हाईट रंग का उसपे मॉनीटर लगा है ब्लैक रंग का बहोत सारे बैलून लगे हैं पीले और लाल रंग के--